इसके अंदर एक से ज्यादा अधिक गुलाब हैं और इनकी खूबसूरती इनके ऊपर यह वाइट सी एक तरीके के पानी कह सकते हैं हम इसको ये और बढ़ा रही है।

यहां पर बहोत सारे आदमी और औरतें बैठी हुई है।

एल_जी कंपनी का इन सब पर लोगों छपा हुआ है और इसमें से एक एल_इ_डी चल भी रही है जबकि बाकी एल_ई_डी बंद है।

ट्रैक्टर भी रखा हुआ है जिसके पीछे एक बोगी भी लगी हुई है।

यह एक पिक्चर है जहां पर बच्चों के लोअर टीशर्ट एवं उनके कपड़े मिल रहे हैं।

और स्कूटी भी है जिसपे अलग अलग आदमी और औरतें जा रहे हैं।

आगे ही कुछ ईंटें रखी हुई है और उसी के आगे एक बाइक भी है जिसका रंग सफेद है तो पीट कुछ लाल भी है।

यहां पर अलग अलग तरीके के कपड़े हैं कुछ जैकेट है तो कुछ लोअर हैं तो कुछ पेंट्स हैं।

तो छः कुर्सियां भी है जिनके उपर कोई गद्दी नहीं है सिर्फ लड़की की बनी हुई रखी है।

और बाहर की तरफ एक काले रंग की दीवार पर काला रंग है जिस पर--